यहां पे एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ एक शादी वाला गेट बना हुआ है जो की काफी सजा धजा है।

और पास ही में बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

नीचे की तरफ बहोत सारे लोग कतार लगा के खड़े हुए है।

यहां पे एक आदमी दूसरे आदमी को माला पहनाते हुए फोटो खिंचवा रहा है।

शाम ऊपर तरफ की तरफ टीन पड़ी हुई है और पीछे की तरफ बिजली का खंभा भी खड़ा हुआ है।

और एक बिल्डिंग से लगकर एक पाइप भी गई हुई है।

साथ में पिलर जो की जालीदार पीलर गया हुआ है।